टायर निकाले हुए जो साइड में रखे हुए हैं।

कुर्सियां लगी हुई है एक व्यक्ति कुछ खा रहा है और काफी सारे मुडे और टेबल वहां हैं।

और दुकान के अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कुछ काम कर रहा है।

इस तस्वीर में एक बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है जिसके सामने तीन कार खड़ी हैं।

जिसमें कि ऊपर अंग्रेजी में लिखा गया आयुष आयुर्वेद डॉक्टर सुमन आहूजा और उसके सामने --

लाइटें ऑन हैं सामने एक घड़ी भी है।

और नीचे काफी सारी लाइटें जल रही है और पीछे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

दोनों ही हिंदी में लिखे हुए हैं और अंदर देख सकते हैं काफी पेड़ दिखाई दे रहे--

और काफी सारी कुर्सियां और सोफे यहां लगे हुए हैं।

और ऊपर किसी साउथ इंडियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है और दो महिलाएं भी वहां पर दिख रही हैं।